यह बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र है गंगगोई ब्रांच का और यह बैंक बहुत बड़ा है इस बैंक में बहुत सारे लोग आते हैं खाते खुलाने यह पे लोग पैसे भी जमा करने आते हैं पैसे उठाने आते हैं और भी बहुत कार्यों के लिए आते हैं।

यह एक डैम है और यह डैम बहुत बड़ा है इसमें बहुत पानी है इस डैम के पानी से लोग सिंचाई करते हैं डैम में मछली पालन करते हैं और डैम के पानी से लोग बिजली भी उत्पादक करते हैं।